जो कि देख बहुत अच्छी बिल्डिंग दिखाई दे रही है और यहां पर बहुत अच्छा काम चल रहा है बहुत अच्छा पे--

और यहां पर साइकिल भी खड़ी हुई है एक गाड़ी खड़ी हुई है जो कि देखने में बहुत अच्छी लग रही है।

और यहां पर ए_सी भी लगी हुई है बहुत अच्छे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं और उसके सामने गाड़ी खड़ी हुई है जो कि डिस्कवर गाड़ी है।

यह एक बहुत अच्छा पार्क है यहां पर शाम को टाइम बहुत ही ज्यादा भेड़ लगी रहती है फिलहाल यहां पर बहुत सारे आदमी बैठे हुए हैं कोई --

उसके सामने दो कोयल पड़ी हुई है जो की ब्लैक कलर की है जो की देखनें में बहुत अच्छी लग रही--

और कुछ यहां पर पेड़ भी दिखाई दे रहे हैं जो कि लिपसीट के पेड़ दिखाई दे रहे हैं इनमें बहुत अच्छे पत्ते नजर आ रहे हैं।

यहां पर ।

यहां पर एक बहुत ही बड़ा बिजली घर है यहां पर बहुत बड़ा ट्रांसफार्मर रखा हुआ है इसमें बिजली का--

लोग यहां पे शाम के टाइम घूमने के लिए आते हैं यहां पे बहुत अच्छे पेड़ पौ--

और ये बहोत ही लंबी लाइट्स दिखाई दे रही है बहोत सारे यहां पे कूलर दिखाई दे रहे हैं और दोनों तरफ में आपके कमरे ही कमरे दिखाई दे रहे हैं जो किराए के ले --

बहुत अच्छा यहां पर काम भी चल रहा है और चार बहुत हुई है चने बहुत--

यहां पर कुछ कुछ व्यक्ति बैठे हुए हैं जिसने अपने सिर पर कुछ--

बहुत चीजे दिखाई दे रही है और मौलवी किसी से बात कर रहे हैं जिसे गुलाबी गुलाबी शर्ट --

यहां पर कुछ तोते दिखाई दे रहे हैं जो कि कमरे में बंद है जो कि देखने में जाली में बंद बैठे हुए हैं जो एक दूसरे को देख रहे हैं।

और यहां हरे कलर के तोते हैं जो कि बहुत अच्छे लग रहे हैं इनकी लाल कलर की चोंच है जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है।

यहां पर बहुत अच्छा कैफे है जो कि देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहां पर बार भी है जो कि यहां पर बहुत सारे व्यक्ति एक बार के बैठ सकते हैं दारू पी सकते हैं खा सकते हैं।

कुछ लोकर बने हुए हैं को ऊपर लाईटे लगी हुई है एसी लगी हुई है और पंखे लगवाए हुए हैं जो की छोटे कूलर के पंख जो देखने में बहोत ही अच्छा लग रहे हैं।

यहां पर दो तीन आदमी बैठे हुए हैं जो कि यहां पर कैफे चल रहा है कुछ खा-पी रहे हैं कुछ कॉफी पी रहे हैं।

यहां पे कुछ दुकानों में कुछ सामान रखा हुआ चाय पत्ती रखी स्प्राइट की बोतल रखी हुई है डीयू भी रखी हुई है जो देखने में बहुत अच्चे लग रही हैं।

यहां पर कुछ कैंटीन में कुछ खाने पीने की चीज रखी हुई हैं जो देखने में बहुत ही अच्छी लग रही है।

और सफाई भी बहुत अच्छी की हुई है बहुत अच्छी तरीके से यहां पर सजावटें की हुई है बहुत अच्छा यहां पर खाना भी बनता है।

और कुछ डस्ट बिन भी रखा हुआ है कुछ कागज रखे हुए हैं जो देखने बहुत अच्छे लग रहे हैं बहुत अच्छे यहां पर कागज भी आते हैं जो--

और शीशे भी लगे हुए हैं एक बाइक भी पड़ी हुई है जो देखने बहोत अच्छी लग रही--